इस चट्टान के उस पार बहोत बड़ी बड़ी पेड़ और मैदान सा दिख रहा है और--

खंबे लगे हुए है लाईटे के और बड़ी-बड़ी पेड़े लगी हुई है निचे पुरी मैदान पर घास है।

इस चित्र के अंदर एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है।

और अदरक लहसुन प्याज लाइन सी बोरियो में बहोत सारी सब्जी रखे गए हैं और कुछ इंसान ये सब्जियां ले रहे हैं।

जमीन पर मेज बिछी हुई है ब्राउन कलर की--

खंभे है और तार बिजली की तार सी लगी हुई है।

बाजू में पूरे घास दिख रही है और उसके बगल में और बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

बाहर पे और दूसरा अंदर पे--

इस चित्र के अंदर एक बस स्टॉप का--

और नीचे वाइट कलर की टाइल्स है।

इस चित्र के अंदर एक बहोत बड़ा आइसक्रीम की दुकान है और कुछ लोग अंदर वर्कर खड़े हैं और--

और ऐक्टिवा बाइक्स खड़ी हुई है छत पर पंखे लगे हुए हैं।

पूरी ब्लैक कलर की कार से कवर किया गया है ये ओ बिल्डिंग --

के उस पर बड़े बड़े पौधे लगे हैं।